कुछ व्यक्ति खड़े हैं जो कि ये तार और ये सीढ़ियां जोड़ रहे हैं।

इस फोटो में ये कोई एक मुझे मिठाई की दुकान लग रही है इसमें यह तरह तरह की मिठाइयां हुई है।

जो की पर पेंट किया गया है रेड कलर और ये दीवार है इस दीवार पे व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

और ऊपर एक पोस्टर लगा है व्हाइट कलर का और उसपे कुछ ब्लैक कलर के शब्दों मे लिखा हुआ है।

इस फोटो में ये कोई एक मंदिर है इस मंदिर में ये देवता की मूर्तियां रखी हुई है कुछ वक्ति बैठे हुए हैं।

तैयार कराने आई हुई है और उधर साइड में ये कोई व्हाइट कलर का घर है उसे व्हाइट कलर का पेंट किया गया हैं ऊपर छत --

और यहां पर कुछ लेडीज बैठी हुईं हैं।

और एक गुरुजी खड़े है पास में वो उसमें कुछ बता रे है और छत पे व्हाइट कलर का पेंट किया गया है।

ये बुक्स पड़े हैं और ये एक शीशा है उसके अंदर भी कुछ खिलौने पड़े हैं और ये तरह-तरह के ऊपर रंग बिरंगे लगे हुए हैं।

इस फोटो में यह एक रूम है इस रूम में दो चेयर लगी है रेड कलर की --